एंड आपको एक शॉप दिख रही होगी उसमें एयरफोन मोबाइल वगैरा मिल रहा है बगल में सैलून भी खड़ा है एंड उसके बगल में एक और शॉप है उसमें साउंड बॉक्स वगैरा खड़े हैं बाइक भी लगी हुई है एंड कुछ लोग भी आपको दिख रहे हो --

हेल्लो एवरीवन जैसा की आप देख रहे हैं ये आप को झंडा दिख रहा होगा जो तीन कलर का है अ ऑरेंज ग्रीन वाईट कलर का है।